सामान रखने के लिए बच्चे लोग इसमें आकर स्टडी भी करते हैं और सीखते भी है कुछ।

बड़ी-बड़ी घास दिखाई दे रही है जिसे थोड़ी सी मी-मिट्टी से थोड़ा सा ऊपर से पहाड़ टाइप का हो गया है।

अगल-बगल पिंक कलर का घर है व्हाइट कलर का घर हैं। यहाँ पे कुछ फोन टॉवर दिखाई दे रहे हैं।

खाली-खाली रोड है अगल-बगल में बिल्डिंग्स खूब सारी है यहां पे कुछ कार ढकी हुई है।

इसमे सिर्फ फीमेल एडमिट होती है रूम मे --

मार्बलस लगा हुआ है काफी बड़ा सा रूम दिखाई दे रहा है खिड़की खुली हूई है।

शादी बिहा का टाइम है दो मंडप पे कुछ लोग बैठे है ऊपर स्टेज पे कुछ लोग बैठे हुए है डेकोरेट कर रहे हैं।

बंद है। खिडकी के गेट पे पूरा काँच कांच है लगाया --